यहां पे एक दुकान का दृश्य है जिसके ऊपर कुछ शैंपू टंगे हुए हैं रस्सी पे।

यहां एक स्कूल का दृश्य है जिसके बाहर दो गेट हैं जो हरे रंग के हैं।

पीछे में कुछ लोहे के रॉड रखे हुए हैं यहां एक व्यक्ति है पीछे एक व्यक्ति रॉड को काट रहा है।

यहां पे कुछ लोहे के डंडे प्रकार के रखे हुए हैं।

ऊपर में कुछ रेलिंग टाइप के लोहे में बने हुए हैं।

उसके बगल में कुछ बाइक रखे हुए हैं स्कूटी है बाइक काले रंग का है।

यहां दो बाइक है जो काले रंग का है एक डस्टबिन है पीछे में आसमान साफ है।

पूल के ऊपर कुछ घास है।

पीछे में एक खिड़की है जिससे रोशनी पड़--

यहाँ एक सब्जी मार्केट का दृश्य दिख रहा है।

सब्जी मार्केट के अंदर कुछ बोरे रखे है जिसके बगल में एक केला है।

पीछे में टंकी लगा है जो नीले रंग का है।

पीछे में दो ऑटो और है यहाँ पीछे में बिल्डिंग है बिल्डिंग के ऊपर कुछ खिड़कियां।

यहां पे एक दुकान का दृश्य है जिसके बाहर कोको कोला लिखा है।

पीछे मे बहोत सारे पेड़ है पेड़ के कुछ पत्तियां है।

माल के अंदर हैंगर है हैंगर के अंदर कुछ कपड़े हैं जैसे कि कुछ पैंट है जो लाल रंग का है जिस पे एट लिखा है।

यहां पे एक होटल का दृश्य दिखा रहा है होटल के ऊपर में एक पोस्टर लगा है जिस पे ताज लिखा है।

और यहां कुछ कुर्सियां है ऊपर में लाइट जल रहा है।

यहां पे एक आदमी का दृश्य है जो एक पत्थर पर बैठा हुआ है।

यहां पे घर है जिसके बाहर में शटर लगा है।

के बगल में दीवार पर दो बैग रखे हैं और एक स्विच बोर्ड है।

यहां एक गेट दिख रहा है शीशे का बाहर में कुछ पेड़ दिख रहा है।

यहां पे दो तीन टेंट है जिसके ऊपर कुछ फ्लावर है।

यहां पे बहोत सारे व्यक्ति है यहां टेबुल के ऊपर खाना रखा है बर्तन में।

यहां पे एक बेड बहुत सारे चेयर है टेबुल है चेयर के ऊपर व्हाइट कलर कपड़ा बिछाया है।

यहां पे कुछ कचड़ा गाड़ी है।

यहां दो तीन घर का दृश्य है जिसके बाहर गेट लगे हैं।

कैलकुलेटर है नीचे में एक पेन दिख रहा है।

पीछे में अलमारी है जिसके ऊपर एक बॉक्स है।

यहां पे कुछ चार सौ पचास लिखे हैं दो सौ अस्सी लिखे हैं दो सौ दो सौ तीन सौ साठ लिखे हैं।

पीछे में छपरा दिख रहा है जिसके ऊपर कुछ बांस के डंडे हैं जो रस्सी से बना --

एक व्यक्ति है पीछे में एक छपरा है जिसके ऊपर एंटीना है और पीछे पेड़ है।